पौधे वगैरा हैं और काफी बड़े बड़े पेड़ हैं |

और ये लोग पानी में खड़ी हुई खड़ी हैं और पानी में घास हैं और यहाँ --

और कुछ लोग निचे खड़े हैं और यहाँ फूल वगैरा लगा हुआ है | एक पर्दा लगा हुआ है |